यहां की जमीनें पक्की दिखाई दे रही है बहुत सारे नारियल के दरख़्त दिखाई दे रहे है बहुत सारी तारे भी दिखाई दे।

एक खूबसूरत सी लाइब्रेरी दिखाई दे रही है इस लाइब्रेरी में एक कबड टाईप का बनाया गया है उसमें पाट पाट करके लोग स्टडी कर रहे हैं बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे है इसमें स्विच बोर्ड भी लगाया गया है।

बहुत सारी बैनर भी लगी हुई है एक अ एडजस्टफैन भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे पंखे भी दिखाई दे रहे है बहुत सारी बैंचे भी दिखाई दे रही है जहां बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक हमारे हिंदुस्तान का झंडा भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे बारात भी दिखाई दे रहे हैं एक जूसर भी दिखाई दे रहा है बहुत सारी ग्लासे भी दिख रही है गमला भी रखा हुआ है छुरी भी दिखाई दे रहा है।

बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ग्रीन कलर व्हाइट है इसमें एक बालकनी भी दिखाई दे रहा है जिसमें ओम बना हुआ है और बहुत सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही है इसमें से खिड़की दिखाई दे रही है बाहर एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा हुआ है।

छोटी सी क्लासरूम दिखाई दे रही है यहाँ एक व्हाइट कलर की बोर्ड दिखाई दे रही है एक विंडो भी दिखाई दे रहा।

नीचे बहुत सारी दुकाने दिखाई दे रही हैं शटर वाले गेट भी दिखाई दे रहे हैं एक टैक्सी भी दिखाई दे रहा है बहुत सारी बाईके भी दिखाई दे रही हैं आगे से पाकी आस पास बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।